आसमान भी वर उ आसमान भी दिखाई दे रहा है।

वीर भी लगी हुई है।

तस्वीर भी लगी हुई है पाडर भी है।

ईट भी उर पड़ी हुई है पेड़-पौधा भी है।